घर है यह पत-इस घर मे पत्थर लगा है ।

चल रही है उसने मास्क लगाया हुआ है।

इसमें एक बिजली का खम्भा है इसमें एक बहोत सारे पेड़ खड़े है।

इसमें इसे बच्चे देख रहे हैं इसके पास पेड़ भी हैं।

दरवाजे पर ताला लगा है।

यह एक गाय है इसका रंग काला सफेद है इसके पास ----

इनके पास पीछे पेड़ दिखाई दे रहे है।

यह एक सुखी नदी है इसमे मोटे-मोटे पत्थर पड़े है।

यहां फलों की दुकान है इसमें सेब औ संतरा आम इत्यादि फल रखे है।